कुछ पेड़ पौधे हैं और एक बाइक खड़ी है।

और कुछ लोग भी देख रह्या--

और शीशे का गेट भी है और कुछ टाइल्स भी लग रही है।

यह कार अलग अलग रंग की भी है ब्लैक रेड --

कुछ समान नीचे पड़ा है और एक खिड़की दिख रही है जिसमें शीशे लगे हुए हैं।

और एक रेलिंग लग रही है और एक डिजाइन लग रहा है शीशे का।

और एक हरे रंग का गेट भी है कुछ पन्नी भी रखी है।

यह एक जनरल स्टोर है इसमें कुछ बैग टंगे है।

और कुछ किताबा धरी हैं और कुछ पेंसिल धरी हैं।

जिसमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्कूल है इसमें कुछ बच्चे हैं।

और कुछ गाड़ी दिख रही है और एक आदमी है।

और ब्लू कलर का आसमान भी दिख रहा है।

यह एक कमरा है इसमें दो फैन लगी हुई है।

और एक आदमी खड़ा है और हरे रंग की चादर भी बिछ रही है।

यह एक कमरा है जिसमें एक कुर्सी धरी है और मेज धरी है।

और कुछ लाइट लग रही है और कुछ चार्जिंग से लग रहे हैं एक पर्दा लगा हुआ है।

यह एक घर है इसके ऊपर एक सूर्य ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है।

और एक पाइप है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक ट्रक है जिसमें कुछ लोहे का सामान रखा हुआ है।

यहां एक लोहे की प्लेट है जिसमें कुछ डिब्बे नजर आ रही है।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

और सीट रखी है और बैग भी है और मैडम भी बैठी है।